ये एक पोस्ट ऑफिस है जिसमे पीले दरवाजे दिखाई दे रहे हैव्हाइट कलर का--

स्टेशन नजर आ रहा है जिसमे अ बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैएक लेटा हुआ है पेर ऊपर करके और टीन का छत नजर आ रहा हे।

बहुत सारे कुछ टांगे हुए है सिद्दी मे दे रही है खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

रेड कलर की काले कलर की अअ गुलाबी कलर की फिरोजी कलर की हर चीज की गाड़ियों की स्टैन्ड --